पंडाल बनाया गया है और एक यहां सोफा भी रखा गया है साथ में--

एक कॉपी किताब की दुकान दिखाई दे रहे है जहां पास बहुत से अलग अलग तरीके के कॉपी --

शाम का समय है। कई इंसान आते-जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साइड कई सारी बनी हुई दिखाई दे रही है। रेड कलर की एक बस दिख रही है एक बस व्हाईट कलर की दिखाई दे रही।

अलमारी रखी गई है। यहां तीन से चार कूलर भी रखे हुए हैं। साथ में यहां बच्चों के खेलने के लिए कुर्सियां बनाई गई है और यहां--

इस फोटो पे मुझे एक घर दिखाई दे रहा है साथ में यहां पास--

बहोत बड़े बड़े पेड़ भी लगे हुए हैं पास में बहोत सारी दुकानें भी है।

एक ट्रेन भी जा रही है और यहां पास एक बहोत बड़ा पेड़ भी लगा हुआ है।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

इस फोटो पे मुझे एक बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिखाई दे रहा है जहाँ पर बहुत सारे लोग की गाड़ी खड़ी हुई है और एक इंसान।

सारे मजदूर मास्क पहने हुए हैं और यहां पास--

ऊपर रखा गया है साथ मे यहां पास--

इस फोटो पे मुझे एक होटल दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत बड़े-बड़े सोफे रखे हुए हैं और साथ में यहां --

इस फोटो पे मुझे एक रूम दिखाई दे रहा है जहां पास बहोत सी टी_वी लगाई गई हैं और--

इस फोटो पे मुझे एक शादी का स्टेज दिखाई दे रहा है जहां पर बहोत से लोग बाहर खड़े हुए हैं।

यहां पास एक चीज का एडवरटाइजमेंट के लिए पोस्टर लगाया गया है और गार्ड के लिए।--

इस फोटो पे मुझे एक छोटा सा घर दिखाई दे रहा है घर के नीचे दोनों शटर लगी हुई हैं और घर के बाहर--

शटर के ऊपर बहुत सारे बल्फ भी लगे हुए हैं।

बाहर के साइड में बहोत सारे छोटे छोटे पौधे भी लगे हुए हैं।

और इन्हें ये कांच की ग्लास के अंदर रखा गया है बाहर के चीजो में--

इस फोटो में मुझे बहोत सारी एक ट्रेन दिखाई दे रहे हैं नीचे एक पानी का--

कुछ कांच के गिलास के अंदर रखा गया है। कुछ जमीन में रखी हुई है और कुछ ऊपर रखाई गई है।

बाहर साइड बहोत सारे ग्लू के पैकेट भी रखे हुए हैं साथ में यहां एक कैमरा लगा हुआ है।

इस फोटो पे मुझे एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है और रेस्टोरेंट के बाहर एक--

दोनों लोग एक लैपटॉप में काम कर रहे हैं और यहां पास एक ऐ_सी भी लगा हुआ है।